बड़ा-बड़ा औऱ काफी पानी पानी हैं नदी मैं बोहोत अ सारा बोहोत सुंदर लग रहा हैं ये।

बहोत ही खूबसूरत लग रहा हे ये विमान देखने में आगे ग्री लोहे की ग्रिल लगी हुए हे ओर छूटे छूटे पेड़-पौधे भी है सा--